कलर का ये लगा है और ऊपर ग्रिल है साइड में भी--

यहाँ पे बहुत सारे झाड रखे हैं बैठने के लिए कुर्सियाँ रखी गयी है टेबल है ए --

एक पें पेंटिंग है वहां जिसमें एक लड़की का फोटो बना है और कैंडल रखा हुआ है।

और दो वायर वीयर लगा हुआ है और तीन खंभे है।

और दो आदमी जिम कर रहे हैं एक आदमी ऐसे ही बैठा है।

दो लोग साइड में जा रहे हैं।